इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

पेड़ सब भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

सा नदी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक रुम दिखाई दे रहा है।

इसके सामने मुझे एक गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे मुझे गारी सब भी दिखाई दे रहा है।

इंसान भी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

संडे भी दिखाई दे रहा है।

साइड में मुझे ब्लैक कलर का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है और बड़ा बड़ा पेड़ सब दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक इंसान भी दिखाई दे रहा है।

और सोलर मशीन सब भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारा इंसान लोग दिखाई दे रहा है।

दूर में मुझे एक लाई दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा इंसान लोग भी दिखाई दे रहा है।

सोफा सेट दिखाई दे रहा है।

ग्लास सब भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में छोटा छोटा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जोकि वाइट और रेड से पेंट करके--

ये छोटा छोटा पत्थर सब भी दिखाई दे रहा है।